एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे है। वहाँ पे एक व्यक्ति जिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल दिख रहा है।

चित्र एक जिम का है वहाँ पे एक्सरसाइज के साहित्य रखे हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक हॉल का है। हॉल में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उनके पास फेविकोल है रंगीत कागज़ है कैंची है। वो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेंसिल है कैंची है फेविकोल है और वो सब आर्ट एंड क्राफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये चित्र एक हॉल का है। वहाँ पे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो अपना वर्क करते हुए दिखाई दे दे रहे हैं। उनके सामने रंगीत कागज़ है कैंची है फेविकोल है।

बुक डिपो के अंदर सामान दिख रहा है | वहाँ पे सामने कैरमबोर्ड दिख रहा है। बैटें‌ दिखाई दे रही हैं ।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।